एक बड़ा सा मछली का बाजार है मछली मार्केट मे ये काली फिशे रखजी हुई और बीच मे रेड - रेड सी फिश है और वह साइड मे व्हाइट ब्लेक फिश ।

बडा सा मन वो बना है चर्च बना हुआ है दो आस पास छोटी - छोटी बिल्डिंग बनी हुई हैं एक कार खड़ी है साइड मे रेलिंग बनी हुई है। साइड मे केले का पेड़ है साइड मे बड़ा सा खजूर का पेड़ है |

एक शेर डला हुआ है बड़ी सी कार खड़ी हुई है सफारी नीचे वैन खड़ी है दो-तीन सफरियाँ खड़ी हुई हैं --

खड़े हुए हैं आसमान दिख रहा साइड में रेस्टोरेंट एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और ऊपर पीला सा शेड डला हुआ है उसमे कुछ लिखा हुआ है।

बड़ा सा ग्राउंड है साइड में एक ह रेलिंग बनी हुई है एक दीवार है पेड़ लगा हुआ है बड़ी सी --

इसके ऊपर टायर लगा रखा हुआ है ऊपर एक बिल्डिंग पे झंडा लगा है लाल कलर का साइड में बादल हो रहे है बड़ी बड़ी मशीने रखीं हुई है गाड़िया खड़ी है एक बड़ा सा पहाड़ है पीछे की तरफ।

साइड में एक कार का फ्रंट टायर नहीं है एक और गाडी खड़ी हुई है उसके अंदर भी नहीं है कुछ ऊपर पेड़ लगा हुआ है।